उस दवा खाने में कुछ लोग खड़े हैं और बाहर --

उसके पीछे लकड़ी का दरवाजा और काफी सारे लकड़ी के और भी चीज़े दिख रही है ।

जिसपे गोपालगंज हथवा लिखा हुआ है।

यहाँ एक सामान समारोह का दृश्य है जहाँ पर एक बड़ा सा गेट लगा हुआ है जिसमे स्वागत --

यहाँ एक बहोत बड़ा खाली मैदान-सा है।

सारी दीवारें पिले रंग के हो रखी है | सामने ए.सी. र पंखा है स्विच बोर्ड भी नजर आ रहा है |

रात का समय है इसलिए काला अँधेरा चारो तरफ छाया हुआ है बीच में हलके हलके रोशनी भी दिखती है ।